यहाँ एक बुद्ध बहुत ही बड़ा दिख रहा है और लाइटों से सजाया गया है ये मंदिर के कुछ जैसा दिख रहा है और रोड भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और फदर दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े फदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं फूल और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और बंगे--